घर के बाहर एक बोर्ड भी लगा हुआ है और कुछ गाड़ियाँ भी खड़ी हैं और आस पास बोहोत सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए --

मूर्ति के आस-पास बहोत सारे गमले दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर कुछ जालियाँ भी लगी हुई हैं।

यह एक जगह है जहाँ पे एक सफेद कलर की बिल्डिंग बनी हुई है।